और जिसपे कही लोग चेयर पे बैठे हुऐ दिखाई दे रहे हैं। । जिसके जिसमे एक लोग माइक में भाषण देते हुऐ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में एक बड़ा सा कारखाना दिखाई दे रहा है। कारखाने के ऊपर बहोत बड़े-बड़े टिन शेड से बने हुए कारखाने के बाहर --

और नीचे भी कुछ भूरे रंग के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसमे कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी हैं।

पेड़-पौधों को गमलो में सजाया गया है और स्कूल का रंग भी सफ़ेद दिखाई दे रहा है और जिसमे कुछ बड़े भी --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक मार्केट को दर्शाया गया है। मार्केट के अंदर कई सारी अलग- अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रहे है।

और भी अलग प्रकार की चीजें भी दिखाई दे रही हैं जिसमें एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए --

पीले रंग की कैरेट में रखा गया है और उसपे एक मछली बेचते हुए एक दुकानदार दिखाई दे रहे है। उसके हाथो में एक तराजू भी है।

यह एक चित्र और इस चित्र में बहोत सारी महिलाये छठ पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमे --

एक चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और लड़का फोटो लेते हुए प्रतीत हो रहा है अपने फ़ोन से।

मटन बर्गर और कई प्रकार की अलग अलग चीज़े भी लिखी हुई --

जैसे कि इ टूरिज़म जिसमें नीले रंग की एक बोर्ड भी लगी हुई --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक कम्युनिटी हॉल दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी हाल के गेट पे --

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर मे एक तालाब दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के दोनों ओर बड़े- बड़े पेड़ पौधे हैं।

और तालाब में पानी का रंग हरा दिखाई दे रहा है। तालाब से कुछ दूरी पे कुछ --

यहाँ एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक सड़क को दर्शाया गया है।